इस चित्र में चिड़ी मछली है ढेर सारी सफ़ेद रंग की प्लास्टिक में है और पूँछे लम्बी-लम्बी है और पैर भी लम्बे-लम्बे है।

पीछे भी पेड़ है आसमान भी दिख रहा है साइड से में एक छोटा दो बड़े टायर लगे हुए हैं दो छोटे दो बड़े |